ये पेड़-पौधे हैं पेड़ में झाड़ भी है और ऊपर आसमान भी --

परोठा है और टेबल पे रखा हुआ है इसके बगल में अँधेरा सा दिख रहा है यहाँ पे लाइट जल रहा है।